टेबल और चेयर लगे हुए हैं।

कुछ चेयर रेड कलर की है कुछ व्हाइट और येलो कलर की हैं।

इस तस्वीर में एक रेलवे प्लेटफार्म है।

और एक कैमरा भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर के अंदर एक रोड है।

और बगल में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

गार्डन के अंदर कई सारे गमले रखे हुए हैं।

और इस बिल्डिंग के बाहर दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

पंडाल के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

और बहुत सारे पंखे भी लगे हुए है।

और बगल में दो तीन मूर्तियां और भी रखी हुई हैं।

और इस किचन के दीवाल पर कई सारे खाने के या आइटम्स पोस्टर करके लगे हुए हैं।

हॉल के अगल बगल लाइन से कई सारी दुकानें लगी हुई हैं।